और यहां पर ये जो कुर्सियां रखी हुई है जो की लकड़ी की है।

और यहां पर ही योगा कर रहे हैं इस रूम में काफी सारे मैटे भी बिछी हुए हैं।

और यहां पर एक नदी भी बनी हुई है और यहां पर काफी सुंदर चित्र दिख रहे हैं।

यह एक दुकान के पास काफी सारे बच्चे खड़े हुए हैं।

यहां पर लोहे की ड्रिल भी बनी हुई है और यहां पर काफी सारे कपड़े रखे हुए है।

साथ में ही इसकी खिड़कियां कांच से बनी हुई है और यहां पर दो पेड़ भी लगाए गए है।

साथ में ही यहां पर काफी सारे झूले बने हुए हैं जो की मोटर की हैं।

और इस चित्र में जो व्यक्ति खड़ा है उसने सफेद कलर की टोपी व कुर्ता पहना हुआ है और पीछे की ओर लोहे की ग्रिल भी बनी हुई है।

साथ में ही यहाँ पर काफी सारी लाइटें भी लगाई गई हैं।